रखे हुए दिख रहें है कुछ ऑटो यहाँ पर ऑरेंज और ब्लेक कलर में दिख रहें हैं और कुछ ऑटो जो हैं यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है और आसपास में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

काफी जगह में फैला हुआ दिख रहा है कुछ पत्ते गिरे हुए है सूखे दिख रहे है। कुछ मिट्टी गीली--

बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा है और बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है पिंक कलर में किया हुआ दिख रहा है और आसपास में कुछ बालकनिज दिख रही है।

एक पर्सन दिख रहा है जो खड़ा हुआ दिख रहा हैं और यहां पर आस-पास में कुछ मिट्टी वगैरा दिख रही है जो ब्लैक और येलो कलर में दिख रही है।

एक गुफा दिख रही है काफी पुरानी दिख रही है और यहां पर सामने एक गेट लगा हुआ दिख रहा है और आस-पास में कुछ डिजाइनिंग वगैरा बनाई दिख रही है और सामने में कुछ घास वगेरा दिख रही है।

दो चीज बिल्डिंग दिख रही है और बिल्डिंग में कुछ कांच की विंडो बनी दिख रही है और सामने रखा हुआ दिख रहा है और आसपास में भी काफी सारी बिल्डिंग है दिख रही है उनसे काफी सारी विंडो दिख रही है।

इमेज में बड़ा-सा गेट दिख रहा है और आसपास में भी कुछ मंदिर वगेरहा दिख रहे हैं और यहां पर कुछ पेंटिंग कलर है कुछ ऑरेंज है और कुछ पिंक कलर का दिख रहा है और सामने भी एक जाली दिख रही है।